मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर पहाड़ दिख रहें हैं।

यहां सफेद बादल दिख रहे हैं।

यह एक कॉपी किताब की दुकान है।

यहां एक मूर्ति रखी हुई है।

मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुर्सियां रखी हुई है।

यहां सफेद रंग का कलर हुआ है।

इस दृश्य में सैलून दिख रहा है।

मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां एक बड़ा आईना लगा है।

यहां बहोत सामान रखा हुआ है।

यहां नीले और सफेद बलून लगे हुए हैं।

यहां एक पानी की टंकी रखी है।

ये घर लकड़ी का बना है।